ऐगो रोड है रोडो पर बहुत सारा बाइक लगल है बहुत सारा आदमी है बहुत --

ये वो मॉल है मॉलवा में लिफ्ट वाला सीरी लगल है उका बगल में लिखल है बोर्ड पर एस_वी_आई कार्ड ऊकर आगे वो कुर्सी --

कुर्सी लगल है एइजा पड़ी आगे में एगो बुतरू वाला गाड़ी लगल है जे ब्‍लू कलर के है पीछे हमरा बहुत सारा दु --

कान दिखाई दे रेलिया बहुत सारा बल्ब भी दिखाई दे रेलिया --

जो पीला कलर का साड़ी पहन रह लिए हैं पेहरा के ऊपर बहुतत सारे पेड़ दिखाई दे रह लिए है बहुत सारा लठ्ठी दिखाई दे --

फूल सजावल के ले जई जे लाल है पीला है उजला है नीला है यहां पर बहुतत सारा डिजाइन काला के लिए कालेई बिछ्छल--

छोला बन रहेहा प्लेट में छोला निकालन है वो चम्मच है पीछे बहुत सारा प्लास्टिक भी दिख रहा है प्लास्टिक में बहुत-----

जैसन के हम देख पा रह लिए है इ ऊ ऑफिस है एकरा में चार लेपटॉप रखल है बहुत सारे बलब दिखाई दे रह लिए है ओर बहुत सारा कुर्सी --

कुछ लोग खड़ा है एक वो लेडीज खड़ा है जो काला कलर के स्‍वेटर पहन लिया है एक वो जनिया जो है लाल स्‍वेटर पहन लिया है ।